होटल में भी ऐसी नलें बाथरूम में लगाई जाती हैं।

एक लेडी होटल में आई है।

गॉर्ड बाहर बैठा है यह होटल बीकानेर है।

तीन और चार गाड़ियां अलग अलग कलर की यहां पर खड़ी है।

टीन शेड भी बहोत ही सुंदर लगाया हुआ है।

किसी स्टैचू की नजर आ रही है और यह एक --

यह फोटो एक पहाड़ी की लग रही है।

आ रहा है पीछे एक गाय भी बंधी हुई दिख रही --